आ रहा है जहाँ पे बहुत सारे बहन से दिखाई दे रही है जिनकी बहुत बडी बडी सॅान्ग रही है। ये बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बैठे हुए हैं। इनमें से दो खडा भी है। ऊपर से इसको तीन का शर्ट बना हुआ है। साइड फॅमिली भी नजर--

दिखाई दे रखी है साइड में एक और बिल्डिंग जिसके ऊपर से कुछ छोटे-छोटे पड़े भी दिखाई दे रही है|